यहाँ पे गेंदे के फूल रखे हुए हैं उनके बीच में एक गुलाब का फूल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है | यहाँ पे एक टोकरी में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे बोहोत सारे मकान-मंदिरे दिखाई दे रही है और मशीन दिखाई दे रही है जिसका कलर वाइट और ब्लू है |

यहाँ पे टाइप की भी दिखाई दे रही है फिर स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है और स्टेज के --

पेड़ कुछ पे फलें भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे रोड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक छतरी भी लगी हुई और आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन दिखाई दे रही है।